और उसके पीछे में एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दे रहा है जो दरवाजा खुला हुआ है।

इस इमेज में मुझे एक ये योगा क्लास दिखाई दे रहा है।

इसमें जो मुझे एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

मैदान पे वाइट कलर की पट्टी में लाइन खिंचा हुआ है।

हॉल है जो किसी मॉल वगैरा के नीचे का तल है।

और सामने एक ए_सी भी दिखाई दे रहा है जो ऊपर दीवार पे कोने में लगा हुआ है सामने एक वाइट कलर का सेट शर्ट पहना हुआ लड़का खड़ा हुआ है।

इस इमेज मे सामने एक बोलो बोलोरो पिकअप या महिंद्रा स्कार्पियो दोनों में से कोई एक गाड़ी है।

दरवाजे वाले गेट के पास कुछ कर रहा है उधर पिलर के नीचे में कुछ बोरी में रखा हुआ है।

और इधर मस्त मस्त पेड़ में हरियाली है और इधर साइड में --

छोटे छोटे पौधे लगे हुए है जो आकर्षक बना हुआ है यहां पे पानी वाला पाइप लगा हुआ है जिस स पानी का सिंचाई करते है।

यहां पे एक कचरे वाला गाड़ी चल रहा है।

फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल स्टोर से यहां पे खाने पीने का काफी अच्छा सा वैगरा मिलता है दोस्तों आप जाइएगा तो देखिएगा।

जो चलो आइए दोस्तो देखते हैं इस इमेज में ये एक बड़ा सा नीली व्हेल के आकार का मछली है ये लगभग बीस से पच्चीस किलो के वजन का होग।

तो आइए देखते हैं दोस्तों इस इमेज में एक दुर्गा माता का पंडाल है जिसमें एक पुजारी या कोई एक इंसान है जो ऊपर चढ़े हुए हैं।

पीछे एक पर्दा लगा हुआ है वहां पे एक स्टूल भी रखा हुआ है नीचे ये देखिए--

इधर दीवाल में खड़ी हुई है और--

यहां पे एक ब्लू कलर का बड़े बड़े पिलर भी है।

छोटा सा लड़का पाइप पानी का पाइप पकड़ा हुआ है ये लड़का ऑरेंज कलर का पेंट पहना हुआ है और रेड कलर का टी शर्ट पहना हुआ है जो ये--

कुर्सी बड़ा डिजाइनर दार कुर्सी लगा हुआ है।

रेड कलर की टी शर्ट ब्लैक कलर का टी शर्ट पहने हुए यहां पे काफी सारे लोग डिनर पे बैठे हुए ऊपर ये--